बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं बाउंड्री दिखाई दे रही है जो की डिस्टेम्पर कलर से पुती हुई है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत बडी-बडी जिनका कलर सफ़ेद है और एक बिल्डिंग का कलर पीला है।

बहुत आइड-साइड में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान का कलर काला मटमैला और सफेद सा दिखाई रहा है।

सीढ़ी का कलर आइड -साइड से सफ़ेद बीच में ऑरेंज है और घर दिखाई दे रहॆ है कबेलू वाले।

ब्लैक कलर का चम्मच रखा है एक प्लेट में सफेद चम्मच और ग्रीन चटनी रखी हुई है।